हॉल हे जो ग्रीन कलर का है और जहा पे सीलिंग फेन लगे दिखाई दे रहे है एक रेड कलर का दीवाल दिखाई दे रही है जिस्मे कुछ लटके हुए नजर आ रहे है ओर यहा कुछ टेबल रहे है जिसमे कुछ खाना रखा हुआ हे ।

व्हाइट कलर बहोत बड़ कांच लागि हुई हैओर उसके मेन डोर पर एक मूर्ति बनी हुई है जो पिंक कलर से नीचे गोल राउंड लगा हुआ है जहा दो लेडिज बेठी हुई है।